और यहां पत्थर को काटके गुफा का रूप दिया गया है।

यहां एक पटरी बनी हुई है जिसके ऊपर एक ट्रेन चलाई जा रही है इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और बच्चे भी हैं।

इसके सामने ही एक टेंट लगा हुआ है।